आसपास हम देख सकते हैं कई सारे लोग महिला पुरुष खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

ऊपर की तरफ एक घर नजर आ रहा है। हम देख सकते हैं और भी लोग --

यहाँ एक सड़क दिखाई दे रही है। सड़क के ऊपर एक रैली जाती हुई नजर आ रही है। महिला पुरुष बुजुर्ग लोग भी नजर आ रहे हैं।

आस-पास हम नीचे देख सकते हैं कई सारा समान रक्खा हुआ है जैसे कि तीन डब्बे दिखाई दे रहे हैं हथोड़ा पड़ा हुआ है स्क्रू ड्राइवर दिखाई दे रहा है और --

यहां पर हम देख सकते हैं नीचे लाल रंग का कपड़ा यानी की मैट लगाया गया है दायी और बायीं तरफ पर्दो से सजावट की गयी है जो की सफ़ेद और लाल रंग की है।

यहां पर हम देख सकते हैं। हरे रंग का गेट दिखाई दे रहा है। आस पास दीवार सफेद और हरे रंग की नजर आ रही है। हम देख सकते हैं पीछे --

पालकी नजर आ रही है। जिसे बहुत सारी सजावट की गई है। जैसे कि मौज के पत्तों से और फूलों से सजावट की गई नजर आ रही है।

सामने की तरफ हम देख सकते हैं बैग टंगे हुए नजर आ रहे हैं और कई सारी चीजे दिखाई दे रही है जैसे कि पेन और पेंसिल के डब्बे लटके हुए।

उसके पास में एक तराजू भी दिख रहा है। एक हम देख सकते हैं एक डब्बा जोकि पीले रंग का है।

करते हुए नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति एक गाड़ी को टेका देकर खड़ा हुआ है।

उन पेड़ों की छाया पानी में गिरती हुई नजर आ रही है।

यहा एक जिम नजर आ रहा है। यहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है जो काली टी-शर्ट काली पैन्ट और जूते पहना हुआ है।